एवं पेड़ पौधे भी बहुत है मुझे कुछ पहाड़ियां भी दिखाई दे रही है वनस्पति इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी रहते है।

बहुत ही ऊंचाई पर है दो तीन मंजिला किला है एवं बहुत ही भव्य डिजाइन की हुई है।

एक ऑफिस या फिर कोई दफ्तर नजर आ रहा है जिसमें एक व्यक्ति--

और क्रॉस की चिह्न भी लगे हुए हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

घर दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे बहुत सारा सामान एवं वस्तुएं दिखाई दे रही है यहां पर एक विजिटिंग टेबल भी है यहां पर--

पोर्ट्रेट यानी चित्र भी दीवार पर है एवं मुझे कुछ उस गेट के परे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और उस पर रेडयन से मोबाइल नंबर भी लिखे हुए है एक व्यक्ति है जो लैपटॉप से कार्य कर रहा है एवं एक ब्लैक कलर की --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

इस जग को देखकर मुझे उस प्यासे कौए की कहानी याद आ गई यहां पर बहुत ही अच्छा होटल है।

यहां पर कोई एक औद्योगिक फैक्ट्री है या फिर कोई औद्योगिक अन्य क्षेत्र भी हो सकता है यहां पर --

एवं एक गाड़ी और भी दिखाई दे रही है पास में दुकानें हैं फुटकर व्यापार की पेड़ पौधे एवं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हैं।

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक ए_सी लगी हुई है यहां पर मुझे एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है और बहुत इसके सफेद कलर किया हुआ है।

ये किला या फिर महल खंडहर हो चुका है।

बहुत ही हरियाली छाई हुई है दूब हैं पेड़ पौधे हैं काफी मात्रा में लोहे के ये स्तंभ भीं दिखाई दे रहें हैं।

इसके पास में वृत के परिधि के समान पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहां पर पेड़ पौधे बहुत हैं।

बिल्डिंगे भी है घर भी है बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं अपने काम में बिजी है।

भव्य सुंदर घर है लोहे की गेट है बाहर एक साइकिल भी खड़ी हुई है।

घर में मुझे एक बहोत ही अच्छी--

यहां पर कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष है सफेद कलर किया हुआ घर है घर है अच्छी कुर्सियां है वेजिटेब्ल्स है।